एक चर्च नजर आ रहा है चर्च का गेट जो है ब्लैक कलर का है और चर्च व्हाइट कलर की है।

और साथ में स्विमिंग पूल भी नजर आ रहा है।

एक पार्क नजर आ रहा है पार्क में डस्टबिन जो कि--

और बहा पे बीच बीच में येलो कलर भी थोड़ा सा नजर आ रा है।

और वह पीके ऊपर ट्रस्ट बनाई गई हैं पिंक ब्लैक --

ज्यादा कलर कितना है और कहां पर है छत पर बहुत सारी लाइट नजर आ रही है।

मुझे एक स्टेज दिख रहा है स्टेज के ऊपर एक लेडिस एक जेंट्स खड़े हो के गाना गा रहे हैं।

मुझे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है ब्रिज के नीचे से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं स्ट्रीट लाइट दिख रही है।